और एक केबिन बना हुआ है।

बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

और बहुत सारे लोग खड़े भी हैं वृक्ष वगैरा भी लगे हुए हैं बहुत सारे--

और बल्ब भी लगे हुए हैं।

पेन भी पड़े हुए हैं दुकान के सामने एक ट्रक जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारी रद्दी वगैरह का सामान पड़ा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस है ए_सी रूम --

रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल लगा हुआ हैं।

पंखे लगे हुएं हैं छत वाले और एक पक्खा भी लगा हुआ है।

दो रेड कलर की चेयर्स लगी हुई--

एक वर्कर जो की फोन पर किसी से बात कर रहा है।

बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं।

ये एक कॉलेज है कॉलेज के अंदर --

डस्टबिन भी लगा हुआ हैं रेड कलर का।